उसपे लगे हुए कई रंग के फूल और रिबन हमें दिख रहे हैं।

यह चित्र एक होटल का बाहर का दिखाई दे रहा है जहां पर बड़ी सारी कांच पे टेबल है।

ये चित्र एक बड़ी सारी दुकान का दिखाई दे रहा है जहां में अलमारी योंमें काफी सारी बर्नियों में रखा हुआ सामान है।

जिसमें कम्प्यूटर रखा है एक व्यक्ति इस काउंटर पर खड़ा है जिसने--

नीली शर्ट काली पेंट पेन रखी है यहां की टेबल चेयर सफेद कलर की है काफी सारी भीड़ यहां पर एकत्रित दिख रही ।

ये चित्र एक ओतल का दिखाई दे रहा है जागें हमे लकड़ी के लकड़ी --

फर्नीचर टेबल चेयर्स रखी हुई थी एक सफेद कलर का फेन छत पर--

कथई कलर के पिलर दिखाई दे रहे ।

ये चित्र एक फ्लोरेस्ट की दुकान का दिखाई दे रहा है जहां पे काफी सारी गुल हद काफी गुल ह मि ---

नीले यूनिफॉर्म में बच्चे यहां पे पढ़ते हुए करते हुए--

नीले कलर के कपड़ों में बाल कटवाता हुआ दिख रहा है।

चित्र में बड़ा सारा टैंट सजा है टैंट के बाहर काफी सारे मेहमानों से--

ये चित्र के स्टेज क दिखाई दे रहा है जहॉ पर एक आदमी स्पीच देता हुआ नजर आ रहा है।

पीछे काफी सारी झूगलि ज्वैलरी दिखाई दे रही है यह हर एक वेलवेट के ऊपर लगा हुआअ --

इसके बीच में हरी पत्तियां भी हमें दिखाई दे रही हैं।

ये चित्र एक बड़ी सारे रूम का दिखाई दे रहा है जिसके बेट के ऊपर कंधं रंग बिरंगी चादर--

बिछी हुई हैइसका कालीन कत्थई कलर का है य बड़े सारे कत्थई टेबल लगे है।

एक सिटी के अंदर का दिखाई दे रहा है यहां प बड़ा सारा बेनर और कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है और --

बहुत सारे हरे पेड़ देख रहे हैं पेड़ पर ठका हुआ बहुत सारा लकड़ी का तार दिख रहा है।

घासेस ग्राउंड पे बैठे हुए बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं सामने--

काफी सारी टी_वी चल रही है आसपास काफी सारी भीड़ इकठे थे बहुत सारी सीढ़ी है बहुत सारे लोग बैठे हुए यहां दिख आ--

ये चित्र एक बड़े सारे तालाब का दिख रहा है जहां पे ऊपर खुला आसमान सफेद बादल दिख रहे--

ये चित्र एक होटल का दिखाई दे रहा है जहा की छत व दिवारे कलर की --

जमीन पर कत्थई एवं सफेद टाइल्स पुते हैं यहां की खिड़कियां लकड़ी कीने --

हरी भरी घास छोटे बड़े आगे पेड़ पौधे दिखा--

चर्च दिखाई दे रहा है जो कि सफेद कलर का है।

सामान दिख रहे हैं यहां की कुर्सियां कथई कलर की हैं।

ये चित्र एक होटल के अंदर का दिखाई दे रहा है।